बहुत ही अच्छी शानदार टेबलें रखी हुई हैं और ऊपर बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।

यह किले के अंदर जा रहा है किला देखने में बहोत ही खूबसूरत--

यह एक वॉटर पार्क दिख रहा है।

ये हमारे झ घर में सुख शांति एवं शांति का प्रतीक जो की हमारे लिए बहोत ही शुद्ध मानी जाती है।

साफ सफाई कर रहे हैं जो की बहुत ही अच्छी खूबसूरत दिख रही है इस होटल का इंटीरियर भी बहुत अच्छा लग रहा हैं।